इस तस्वीर में मुझे दो लड़की और दो लड़के नाचते हुए दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा पत्थर का पहाड़ दिखाई दे रहा है।

पी दिख रहा है और बहुत सारे पेड़ भी।

और बहौत सारे बड़े बड़े पेड़ सब भी है।

पंखा सब भी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बील्डिंग दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के नीचे तीन दुकान खुला हुआ दिखाइए दे रहा--

एक और एक बाइसइकल भी दिखाई दे रहा है।

जिस में एक कैलकुलेटर और पेपर्स रखा हुआ है।

बिल्डिंग सब भी दिखाई दे रहा है।

अ ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ भी हैं।

इसमें हरा रंग का कारपेट लगा हुआ है।

और एक बड़ा सा टेबल भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में तीन कुर्सी रखा हुआ है।

और आसमान भी दिखाई दे रहा हैं।

छत पर चल के हैं।

और बहुत सारा पेड़ भी--